तीन चार गाड़ियां एक एक्टिव है एक बाइक है दो सामने उनके अ कैनस है।

एक प आ प्लेयर है वो बॉलिंग करने की तयारी कर रहे है दूसरे जो फील्डर्स है वो इधर उधर एक दूसरे के तरफ देख रहे है।

आ सामने एक घर जैसा जगह रास्ता अ जगह बनी हुई है एक पंडाल है उसमें काफी सारे लोग खड़े हैं।

ये किसी छोटे से फंक्शन की फोटो है इसमें छे लोग हैं।

अ सर पे टोकरी है आदमी ने व्हाइट शर्ट ब्ल ब्लैक पैंट पहना है बिना चप्पल के है।

बाजू में अ झ फ्लैग है रेड कलर काफी सारी ग्रीनरी है ऊपर आसमान खुला है धूप आ रही है थोड़े बादल भी आ रहे हैं थोड़ा पानी भी नजर आ रहा है।

घास सूखी हुई है पत्थर है बैठने की थोड़ी छोटी मोटी जगह है।

ये एक हेल्थ चेकअप रूम की फोटो है यहां पे पांच डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिसमें से चार मेल हैं।

ये जगह की फोटो है इसमें लिखा हुआ है होटल कृष्णा इन सामने सीढ़ियां हैं एंट्रेंस के लिए दो ए_सी लगी हुई है एक कार पार्क है।

अ ब्लू कलर के कांच लगा हुआ है आद एक आदमी खड़ा हुआ है साइड में वो एंट्रेंस में जा रहा है ब बाकी साइड में घर है।

विगस है दूर एक आदमी ऊपर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है और कुछ लोग चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अ ब्लू टी शर्ट में रेड एंड व्हाइट चेक टी शर्ट में शर्ट में--

इसमें से हम देख सकते हैं ग्रीनरी है सामने धूप की छांव पड़ रही है येलो कलर का भूसा सा गिरा हुआ है।

उसका हाथ में कोई रिंग नहीं है उसने हाथ क्रॉस क्रॉस कर रखे है उसने एक अ कड़ा पहन के रखा है उसकी वाइट सी व्हाइट से पैटर्न बनी हुई है जिस जो ब्लू कलर की टी शर्ट में है।

काफी सारी बिल्डिंग हैं बहोत सारे वायर्स हैं कुछ बिल्डिंग छोटी बड़ी हैं एयर बैलून है एक बर्ड फ्लाई होती हुई जा रही है।

इसमें वॉल दीवार टाइप की बनी हुई है रेड कलर की उसमें स्पेसिंग हो रखी है ऊपर अह सीलिंग जा टाइप में व्हाइट कलर का कपड़ा बंधा हुआ है।

ये एक ग्राउंड की फोटो है इसमें काफी कीचड़ सा पड़ा हुआ है।

ए_सी है इसमें फैन है व्हाइट कलर का इसमें लाइट लगी हुई सीलिंग पे येलो कलर की व्हाइट कलर की भी है।

उव जहा पे वेलकम लिखा है वहा एक शेड है वहां एक परसन खड़ी हुई है ग्रीनरी बहोत अच्छी है आसमान खुला है।

ये एक चर्च की फोटो हैं इसमें चर्च में मल्टीपल लाइट्स लगी हुईं हैं मल्टी कलर्ड पर्पल येलो और बहोत सारे कलर के सामने व्हीइकल पार्कड है।

एक बाइक खड़ी है स्पोर्ट्स बाइक के दो तीन आदमी चलकर आ रहे हैं एक लेडी सामने से चर्च में से बाहर आ रहीं --

ए एक विंडो है यहां पे एक अंकल खड़े हुए हैं व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट में।

पर्दा है उसमें काफी सारी अम बॉक्सेस हैं जहां पे कुछ सामान दूर से रखा हुआ नजर आ रहा है सीलिंग है दीवार है क्रीम कलर की।

ये फरसान की फोटो है बाहर की उसका नाम मुंद्रा स्वीट्स एंड मार्ट एक साइड स्वीट का बोर्ड लगा हुआ है एक साइड फरसान का बोर्ड लगा हुआ है।

ये गार्डन जैसा है यहां पे बीच में एक क्लॉक बनी हुई --

ये किसी साइड की फोटो है जिसमें एक स्टॉल है मतलब एक अ टोकरी टाइप की है तीन चार --

इसमें एक ने धोती पहनी हुई है सामने रिवर है।